और इससे बिजनेस होता है मतलब समान को एक जगह से दूसरी जगह निर्यात भी होता है और आयात भी होता है।

ये कही का मतलब इसमें बोहुत सारी लाइट्स जला हुआ है। कुछ --

ये एक एजेंसी है हीरो कंपनी का यहां पे बाइक मिल सकती है ये गोपाल हीरो के श्री गोपाल हीरो की कंपनी है।

और कुछ रखा हुआ है और बगल में कोई बैठा हुआ है और एक बच्चा भी है जो खड़ा हुआ है यहाँ पे बगल में किसके --

एक जिम सेंटर है यहां पे जिम होता है और यहां पे कोई खड़ा हुआ है यहां पे बहुत सारे लोग हुए है जो जिम करने आते है।